एक सीमेंट की कुर्सी पे बैठा हुआ है साइड में पेड़ है ऊपर बिजली के बड़े बड़े खंभे और लोहे के बड़े बड़े तंबू लगे हुए है।

आस पास बहुत सारे पहाड़ घर मकान दिखाई दे रहे है सामने बहुत हरी हरी घास दिखाई दे रही है साइड से एक मोटर पानी के अंदर नाव खड़ी हुई है लाल कलर की दिख रही है|

पूल बना हुआ है जो की पूरा गिला है आस पास पानी दिखाई दे रहा है बहुत --

ये एक आदमी है जो की शुगर कैंडी बेच रहा है शुगर कैंडी का कलर गुलाबी है अ पीछे एक बैनर लगा हुआ है ए जिस पर बर्फी स्वीट्स लिखा हुआ है अ कुछ औरते कुछ बड़े--

हां बड़े-बड़े तबयटी दिखाई दे रहे हैं बाहर रोड दिख रहा हैं अ कुछ बिल्डिंग महारथ दिखाई दे रही हैं अंदर बिलकुल अँधेरा हो रहा हैं।